यहाँ पे जो है की रात का मौसम है और यहां पर सब लोग जो है ढोल बजा रहे हैं और कुछ जो है उसको देख रहे हैं कुछ जो है उसको बजा रहे हैं।

बड़ी सी बिल्डिंग है जो की एक अपार्टमेंट है और उसके नीचे जो है एक उस पर बोर्ड लगाया गया है उसे नीचे की और कुछ शॉप्स है।